इस तस्वीर में मुझे एक वार्ड नजर आ रहा है जोकि एक हॉस्पिटल का वार्ड है।

और कुछ डॉक्टर जोकि एक नर्स को मेडिसिन समझाते हुए नजर--

इस ढाबे का नाम विक्रम ढाबा है जोकि चंडीगढ़ में स्थित है।

हमें इस स्कूल में एक लड़की दिखाई दे रही है जोकि एक टीचर है।

जोकि एक ईजी रुट की तरह दिखाई दे रहे है और साथ में यहां पर एक बॉल ल--

टीचर हो गया या कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हुए नजर आ रहे है।

जी हम हिंदी में किताबो की दुकान भी कहते है।

इस तस्वीर में हमें एक गार्डन नजर आ रहा--

इस तस्वीर में हमें एक पार्क नजर आ रहा है जो कि पर है। इसके अंदर अशोक चक्र का स्तंभ भी दिखाई दे रहा है।

जोकि बहोत ही अच्छे और आकर्षिक दिखाई दे रहा--